जो की देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है।

कोई भी हमें यहाँ पे व्यक्ति विशेष दिखाई नहीं दे रहा है क्यों की इस वक़्त तक लगता है काफी देर हो गई है रात हो गयी है ।

नदी में जो है कुछ मछुआरे भी दिखाई दे रहें हैं और फिर नौका चालक --

बीच भी का ये पोस्टर है और ऐ शायद कोई सरकारी सरकारी कार्यालय है।

मालुम नहीं मगर ये देखने में ठीक है और ऊपर जो है आसमान साफ़ है धुप निकली हुई है ।

और ये देखने में काफी ज्यादा अच्छा प्रतीत होता है। यहाँ पर जो हे कोई व्यक्ति विशेष तो है नहीं मगर ये देखने में माहोल काफी अच्छा है।

ये किसी फेस्टिवल में रखी हुई मूर्ति है।

दिन के समय में ये खड़ी हुई है।